यहाॅं पर ये बहोत सारे लोग डान्स प्रैक्टिस कर रहे है और जे --

बहोत सारे हरे प्लाँट लगे हुए है पास में कुछ पेड़ भी खड़े हुए है।

पेड़ काफी ऊँची है एक टॉवर लगा हुआ है टॉवर काफी ऊँचा है और ये --

पातले बने हुए हैं और यह बहोत ही ऊँची मीनार बानी हुई है इसमें बहोत सारी खिड़किया है और इसमें जंग लागे हुए है।